यहाँ पे एक व्यक्ति वेल्डिंग कर रहा हैं उसमे आग निकल रही हैं एक लोहैं का टुकड़ा हैं उसके पास दूर एक रेड कलर की कुर्सी पड़ी है लोहैं की सीढ़ी भी हैं यहाँ पे।

शादी की गार्डन को बताया गया है यहा पे बहुत सारी लाइटे लगी हुई है खाना रखा हुआ है और खाना भी रखा हुआ है लोग इधर से उधर जा रहे है कई लोग खाने के पास भी खड़े कई कुर्सीया भी लगी हुई है।

फूल भी बने हुए हैं धुएं पत्ते वाली डिज़ाइन हैं दूर दूर तक पौधे बड़े बड़े पेड़ हैं तीन तीन गाड़िया भी खड़ी हुई हैं यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधे--

यहा पे खाने की प्लेट रखी हुई है जिसमे बिर्याणी साथ मे दाल भी रखी हुई बिर्याणी जग मे पानी भरा हुआ गिलास मे भी पानी भरा हुआ दही रखा हुआ है।

सारे सोफे रखे हुए हैं एक व्यक्ति ऊपर एक सीडी पे खड़ा हुआ हैं वो कुछ लगा रहा हैं कार्पेट रेड कलर की कार्पेट भी पड़ी हुई हैं गमलाऐ रखी हुई हैं एक होल की तरह हैं पीछे बहुत सारी व्हाइट कुर्सियां भी रखी हुई हैं लाइट हैं पंखा हैं ए.सी. हैं।

रौशनी आ रही हैं पंखा हैं उसमे ऊपर लोहे के वो भी लगे हुए हैं पाइप भी लगा हुआ हैं वाइट कलर का पानी आ रहा हैं और जमीन पर पानी भी फ़ैल रहा हैं यहाँ पे लाइट भी जल रही हैं।

यहाँ पे एक खेत हैं उसमे वाइट कलर की बॉर्डर भी हैं बहुत सारी लाइट लगी हुई हैं शाम का टाइम है पीछे घर भी हैं बहुत पेड़ पौधे भी हैं यहाँ पे।

और बहुत तरह की तरह तरह की डब्बो तरह तरह की कटोरो में यहाँ पर बहुत तरह तरह की मछलिया रखी हुई है। बहुत तरह की मछलिया रखी हुई--